ये रेस्टॉरेंट की फोटो है एक फॅमिली बेठी हुई है कुर्सियों पर पास में एक लड़का और लड़की बैठे हुए है।

योगा टीचर ही सभी को योगा सिखा रहे है सभी ने ऊपर हाथ कर रखा है बच्चों ने भी ऊपर हाथ कर रखा है गेट दिखाई दे रहा है लाइट लगी हुई है।

फार्म ट्रैक एजेंसी का पोस्टर दिखाई दे रहा है ये एजेंसी है इसमें ट्रैक्टर खड़े है अंदर शीशे लगे है। बारे की तरफ --

एक आदमी टेम्पो के अंदर से उतरा है मकान दिखाई दे पेड भी दिखाई दे रहे है हॉल भी दिखाई दे रहा है।

मोटर साइकिल दिखाई दे रही है और एक तरफ आदमी आ रहे हैं पोल लगा रखा है गाड़ी खड़ी है।